-- और कीटो मे यहाँ पर देख सकते हैं दो लोग खड़े हैं।

जो बेहत गोर से किसी चीज को देख रहे हैं।

इसमें एक बदल नजर आ रहा है इस गार्डन मे लंबे लंबे पेड़ नजर आ रहे हैं और कुछ घास नजर आ रहे हैं।

और पुराना नजर आ रहा हैं इसमे एक बाइक्स हैं एक इंसान बैठा हुआ है।

पेंट किया हुआ है इसका पेंट येलो और रेड कलर का किया हुआ है इसके बाहर एक आपको सड़क नज़र आ रही है।

जो की एक नदी या तालाब का बना हुआ है जो जिसके साइड से रेलिंग लगी हुई है और सामने से कुछ लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं।